पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और दिन का समय दिखाई दे रहा है।

एल_ई_डी लगी हुई है और यहां पे स्विच बोर्ड है।

एक टेबल है जिस पे टिफिन रखा है गिलास है और पानी का रखा हुआ है।

अंदर काफी सारी चेयर्स रखी हुई हैं एक केंपर रखा है जो कि ग्रीन कलर का है।

दिन का समय है और यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है। एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

और दिन का समय है।

इस फोटो में एक दीवार दिख रही है जो सफेद रंग की है यहाँ पे टेबल है चेयरस है और एक बेड है जिसपे ब्लु कलर की चद्दर बिछी हुई है।

फर्निचर क सा रखा हुआ है लार्ज सफेद रंग लगी है फर्श पर टाइल लगी है ठीक है।

और यहां लिखा अपोलो फोर जी फोर जी रेनज ठीक है एक लड़का है।

जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है।

इस फोटो में दिन का समय दिखाई दे रहा हैं काफी ज्यादा मिट्टी दिखाई दे रहीं हैं पेड़ पौधे दिख रहें हैं सामने लिखा हुवा हैं ओम शिवम स्टोन --

एक बस खड़ी हुई है जिसपे लिखा ओम ट्रैवल --

कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहें है और अंदर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहें